बिटि तीन चार भगवान का पोस्टर रख्यां तै का अगाड़ी फणि धुप धुप-धाप द्यु त फून डाल्युं।

जख पंडित पण पाण लग्यां रूम पर टाइल -टूलन बिछायां और सामने हमे एक दरवाजा दिखेण लग्युं एक खिड़की दिखेण लगीं और सब ईं छोरु की टोपली पैरी।

एक बडू सा ईमारत दिख्येंण

फुंडा हमि छकि लोगन दिखण लग्यां पिछाड़ी हमि छकि सारा डाला डुलन दिखेण लग्यां और दुई तीन यखा उंडे ढोलक ढुलक बणे क हीटण लग्यां।

दिखण लग्युं और जु सब ही सब जन नाचण लग्यां।

यमा में एक मजीदन कु भितरन दिखेण लग्युं जै भितर छक्की सारा मुस्लमान बैठ्याँ जौं का सा सफेद रंगा का टोपला टापलान पैरयां।

और उरतिर बिटिन हमी बोटल -बॉटलन दिखेण लगीं।